इसी बस स्टॉप पर खड़ी हैं पेट्रोल पंप भी हैं शायद पीछे--

पीछे बड़ा-सा सोफा पड़ा हुआ हैं।

बढ़िया तो दिख रहा है कोई प्रोग्राम है ठीक-ठाक था।